घर का रंग सफ़ेद है।

वे मस्ती कर रहे हैंऊपर मे झरना लगा हुआ है।

एक लड़की खड़ी है जो कि उधर जा रही है।

स्टेशन में एक आदमी भी खड़ा है।

यह एक दुकान है इसमें बहुत सारे सामान है पांच तोता है।

तीन का कलर सफेद है और दो का कलर दो का कलर पीला काला और सफेद में है।

कम्प्यूटर भी हैं और बहुत सारे कागज हैं।

बहुत सारे फ्रिज हैं।

कोई मेहरून है तो कोई ब्लैक है कोई ब्लू है सभी रंग बिरंगे कलर के हैं।

हॉल में एक रूम भी है।

उसमें सीसा लगा हुआ है। उसके अंदर भी आदमी है।

सभी को रैक पे रखा हुआ है ऊपर मे बहुत सारे पाइप्स हैं।

यह एक आसरम है। ऊपर में लिखा हुआ है।

वो ब्लैक कलर का है और दो मैरून कलर के हैं।

बाइक में हेलमेट भी है।

मंदिर का कलरस व्हाइट कलर का अह है।

और भी बहुत सारे सामान है।

एक आदमी है ओ जींस और टी_शर्ट पहना हुआ है।

दुकान में चार आदमी है तीन खड़ा है एक बैठे हैं।

और एक घड़ी भी लगा हुआ है।

में बहुत सारी खिड़कियां हैं।

पांच बाइक बाहर में खड़ा है एक गाड़ी का नंबर --

एक कप की दुकान है।

काला लाल पे प्रिंट किया हुआ है।

यहाँ हरे हरे छोटे छोटे पत्ते हैं।

रूम में बेड भी है कुर्सी टेबल सब कुछ रूम में है।